वहा बहुत से साइकल रालखे हुए है वहा छोटे बच्चे की भी साइकल राखी हुई है वह छोटी छोटी।

और जिस पे लाउड स्पीकर लगा हुआ है।